काफी बड़े बड़े पहाड़ हैं ये और आगे ग्राउंड हैगा यहाँ कुछ मकान भी है और लाइट के खंभे लगे हुए है ये अच्छा रोड हैगा जिस पर यहां पर एक गाड़ी दिखाई दे रही है वाइट कलर की।

और ग्राउन्ड मे बहुत सारे बच्चे हुए जो खेल रहे होंगे इस दौड़ खेल रहे है कुछ क्रिकेट खेल रहे होंगे साम को यहा भीड़ रहती है बच्चों की--

यहां पर एक बहुत बड़ी हवेली बनी हुई है ये और ये हवेली बहुत ही सूंदर है ये और ये काफी पुरानी हवेली है बहुत ज्यादा पुरानी है और ये आज के टाइम पे एक टूरिस्ट पैलेस है।

और यहा पर कोई भी प्रतियोगिता होती है तो इसी मैदान मे होती है क्योकि यह बहुत बड़ा मैदान है और बहुत सारे लोग इसमे आसानी से आ जाते होंगे और इसके खातूर पर काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई--